पास में ग्रीन कलर का पेड़ लगाया गया है सामने जो दीवार है उसपे शुभ लाभ लिखा हुआ है।

सामने बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जो की ग्रीन कलर के आस पास बहुत व्हाइट कलर की लाइटें लगाई हुई --

आसपास बहोत सारे घरे बनाए हुए हैं पास में ग्रीन कलर का कारपेट बिछाया हुआ है उसके बगल बहोत सारे पौधे लगे हुए हैं जिसमें फूल खिला हुआ है जो की पिंक कलर का है।

पास में एक बहोत बड़ा सा चट्टान है जो की वाइट कलर का है और दूर में फैला हुआ है।

उसके बगल में नीचे खाई जैसा है।

यह दृश्य रूम का है जिस रूम का कलर पीला और ब्राउन है।

व्हाइट कलर का लाइट लगा हुआ है और ऊपर का शटर एक खुला है जोकि नीले कलर का है एक शटर जोकि बंद है वो भी नीले कलर का है।

यह दृश्य ग्राउंड का है जिसमें एक झंडा लगा हुआ है जिसमें फ्लैग होस्टिंग हो रहा है।

इसके सामने एक व्यक्ति जो कि बाइक पे है मैरून कलर का शर्ट पहने हुए है।

पास में एक बाइक है जोकि काले रंग की है जिसपे व्हाइट कलर का पर्दा चढ़ाया हुआ है।

बगल में बहोत सारे फेके गए हैं कार्टून के बॉक्सेस जो की ब्राउन कलर के हैं।

उपर में ब्लैक कलर के फैन लगे हुए हैं पास में बहुत सारे व्हाइट कलर की लाइटें लगी हुई है।

यह दृश्य एक स्कूल का है जिसके बाहर बहुत सारी बेंचेज लगाए हुए हैं।

रेड कलर का ग्लैमर तो एक ब्लैक कलर का पैशन प्रो तो एक ब्लैक कलर का स्प्लेंडर लगाया हुआ है।

यह दृश्य एक ऑफिस का है जिसके आस पास बहोत सारी चेयरे लगाई हुई है।

उपर में एक शटर है जो कि खुला हुआ है जो कि ग्रीन कलर का है।

उसके पास में एक प्रिंटर मशीन रखा गया है उसके आसपास बहोत सारे पेपर लगाए गए हैं।

बगल में एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें एक प्लग खोसा हुआ है।

पास में एक पीले कलर की बस लगी हुई है।

यह दृश्य एक दुकान का है जिस दुकान में बहुत सारी बैलूने लटकाई हुई हैं जो कि रेड कलर के व्हाइट कलर के बैगनी कलर के और ऑरेंज कलर के हैं।